यहां सामने की तरफ एक रास्ता दिख रहा है जिसके बगल में कुछ पौधे लगाए गए हैं जो की गमले में रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां और टेबल लगाई गई है जिनका रंग काला दिख रहा है।

एक नदी का दृश्य दिख रहा है जिसके चारों तरफ ही पानी पानी दिख रहा है।

यह एक मार्केट का दृश्य है जहां पर एक फलों का दुकान लगाया गया है।

यहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है।

इस इमारत को गब्बारो से सजाया गया है।

यहां पर हमें एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जिसके नीचे एक सफेद रंग का ओटा बना हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पर बहुत सारे खाने के समान लगे हुए हैं।

नीचे फ्रीजर लगे हुए हैं जिसमें की आइसक्रीम और केक रखे रहते हैं।

यहां पर बहुत सारे फूलों से बहुत सुंदर सजावट की गई है।

इसके ऊपर घासें निकली हुई हैं घासों का रंग हमें हरा दिख रहा है।

यहां पर एक आदमी दिख रहा है।

यहां पर हमें कुछ घर दिख रहे हैं और यहां पे आसमान का रंग काला दिख रहा है।

इसमें हमें एक स्टेज दिख रहा है।

यहां बगल में एक पंडाल है जिसका रंग गुलाबी दिख रहा है।

इस दृश्य में हमें एक बहुत बड़ा सा मैदान दिख रहा है जिसके आगे की तरफ कुछ सीढ़ियां दिख रही है।

यहां पीछे की तरफ दो फ्रिज लगाई हुई है जिनके अंदर बहोत सारे ठंडा रखे गए हैं।

यहां पर एक औरत और एक बच्ची दिख रही है।

इसको लाइटों से सजाया गया है।

इस दृश्य में हमें एक सफेद रंग की इमारत दिख रही है जोकी बहुत खूबसूरत है।

यहां पर एक टीचर भी है जोकि खड़ा--

एक फूल दृश्य है जिसका रंग लाल दिख रहा है और इसके किनारों में सफेद रंग दिख रहा है।

आस पास में कुछ घास दिख रही है।

बाहर की तरफ एक लाल रंग का टेबल रखा हुआ है और एक स्टील की बाल्टी है।

यहां पर हमें दो पिलर्स दिख रहे हैं जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां सामने की तरफ एक रस्ता है।